गेट जैसे की आप देख सकते हो इतना ज्यादा अच्छा व्यू हैं एक सेल्फी यहाँ पे सेल्फीज भीं ले सकते हो।

ये जो देख रहे हैं ये एक स्कूल की फोटो है एक प्राइवेट स्कूल जिसमें सिन्सेरिटी से बच्चे बैठे हैं।

एक मंदिर की फोटो जिसमें बहोत ही ज्यादा कल्चरल तरीके से गेट बनाए गए --

आप ये जो देख रहे हैं ये हमारा एक कल्चर होता है।

लेकिन जो बैंक की स्वीपर है वो बहोत अच्छी है।